एक बोर्ड पे विवो लिखा हुआ है इसका भी कलर ब्लू है।

एक घर चारों तरफ़ ये जगह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ों पे बड़े-बड़े पेड़ हैं। कुछ बिल्डिंग के आसपास समतल जमीन भी है।

एक राउंड टेबल है राउंड टेबल के ऊपर एक केक रखा हुआ है केक का कलर येलो और--

इस सूट के ऊपर वर्क किया हुआ है प्रिंटेड वर्क है बाई साइड पे दो टेबल रखा हुआ है जमीन पे रेड कारपेट लगा हुआ है।

एक इंसान स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है।

सामने दो छोटे गमले हैं जिसमें कि छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

तालाब के अंदर सूखे पत्ते गिरे हुए एक पेड़ भी गिरा हुआ है।

यह एक पहाड़ी इलाके की तस्वीर है जो कि एक पूल के ऊपर से खींची गई है जिसके आगे एक लंबी सी इमारत बनी हुई है जिस की हाइट ज्यादा नहीं है।

दुकान में कुछ खाने पीने का सामान और कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में बास से बना हुआ छे समान है जिसमें एक टोकरी है तो बेस है और दो और सामान है।

ये एक बिल्डिंग की तस्वीर है जिसके आँगन से फोटो खींची गई है।

यहां एक बाइक पे सवार दो लोग जा रहे हैं कुछ साइकिलें लगी हुई हैं और कुछ पेड़ पौधे हैं आस पास में।

यहां पर बैनर लगा हुआ है जिसमें मेंटल हेल्थ एंड लिखा हुआ जेरॉक्स की मशीन लगी है गूगल पे स्कैनर है।

सुंदरता के लिए छोटी छोटी फूल लगाई गई है।

ये एक क्लासरूम है जिसमें की दो मॉनिटर लगा हुआ है।

यह एक पुराने किले का अवसेष है जहां चारों तरफ पेड पौधे उगे हुए हैं।

एक क्लास रूम की तस्वीर है जहां पे तीन अलग अलग तरह के टेबल है।

जिसमें से दो घर के आगे फेंसिंग लगी हुई है ब्लू कलर की।

यह बस स्टैंड है जहां पर पांच बस लगी हुई है।

पहाड़ पे खींची हुई तस्वीर है।

हाथ में एक पानी की बोतल है।